इस चित्र में पांच डी_जे दिखाई दे रहे हैं।

मेन गेट बंद है मेन गेट के ऊपर एक ए_सी लगा दिखाई दे रहा है।

दुकान के बाहर तीन स्टैचू भी लगा दिखाई दे रहा है स्टैचू में तीन सूट पहनाया गया है।

की दोनों बंद है और खिड़की के ऊपर बिजली का वायरिंग भी दिखाई दे रहा है।

और अलमारी के ऊपर भी काफी कपड़े दिखाई दे रहे हैं कुछ डब्बा भी दिखाई दे रहे हैं।

यह चित्र एक पेट्रोल पंप का है।

इसमें तीन गाड़ी दिखाई दे रही है।

एक लड़का खड़ा है खुला आसमान भी देख रहा है एक इसमें पेड़ भी दिखाई दे रही है।

और तीनो गोक मकान भी दिखाई दे रही है।

और एक साइड में नाव भी खड़ी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में बहुत सारी औरते भी दिखाई दे रही है।

कुछ अपना बैठ के नहा रहे हैं और कुछ नीचे नहा रहे हैं अगल-बगल हरे-भरे पेड़ भी हैं।

यह चित्र एक होटल का है होटल का नाम लिखा हुआ--

होटल में बहोत सारे लोग हैं कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हुए भी हैं।

इस चित्र में एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई दे रहा है।

पेड़ भी दिख रही है पेड़ के आगे एक लड़की खड़ी दिख रही है।

और इसमें कुछ बांस का भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में में दो चौकी भी दिखाई दे रहा है।

और ऊपर में एक गमछा एक गंजी टंगा दिखाई दे रहे हैं।

दोनों गेट खुली दिखाई दे रही है।

और आगे एक टेबल भी रखा हुआ है।

और बगल में एक स्टूल टाइप का रखा हुआ है इसका सीलिंग में डिजाइन भी बना दिखाई दे रहा है जो काफी सुंदर है।

और दो पोल भी दिखाई दे रहा है।

बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं।

एक गेट भी दिखाई दे रहा है गेट खुली हुई दिखाई दे रही है।

और बगल में हरे भरे पेड़ भी दिख रहे हैं।

इसमें तीन बाइक भी दिखाई दे रहा है।

और एक साइकल भी दिखाई दे रहा है।

इसमें एक आदमी भी खड़ा दिखाई दे रहा है।

घर के चारों तरफ हरा भरा पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं इसमें झरना भी लगा हुआ है।

वो दुकान में अपना बैठा हुआ है।

अलमारी एक बड़े बड़े रैक बने दिखाई दे रही है उसमें बहुत सारे सामान भरे दिखाई दे रहे है।

और एक अलमारी में कुछ ज्वेलरी भी रखे दिखाई दे रहे हैं।